और यहाँ बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ मुझे टेम्पो सड़क पर चलती हुई नज़र आ रहे है बहुत सारे टेम्पो दिखाई दे रहे है।

और बहुत बड़ी दिखाई दे रही है नदी की और पुल नज़र आ रही है पेड़ पौधे नज़र आ रहे है और बहुत बड़ी नदी दिख रही है।

यहाँ मुझे एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही हैं बिल्डिंग पर मुझे प्युर पौधे लगे हुये दिखाई दे रहे हैं बड़ि बड़ि बिल्डिंगे ये नजर आ रही बॉउंड्री नजर आ रही बहुत सारे फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कार मोटर साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है और वाईर लगी हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे बिल्डिंग बडि सी दिखाई दे रही है इसमे बहुत से व्यक्ति आते होंगे।

और कुछ पेड़ पौधे चारो और दिखाई दे रहे है और छानी जैसा बना हुआ कुछ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पास मुझे बहुत बड़ी गेट दिखाई दे रही है और इसका बिल्डिंग मुझे आसमानी कलर रही है पेंट पोता हुआ दिखाई दे रहा है गेट --

और एक किला जैसे कुछ समज में आ रहा है और यहाँ कुछ लोग एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे है।

गव्हर्नमेंट ऑफ़ गोवा लिखा हुआ सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पास में कुछ ऑफिस लिखा हुआ दिख रहा है।

लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ एक बाउंड्री जरूर दिखाई दे रही है और यहाँ एक पानी के टंकी जैसी कुछ दिखाई दे दिख रही है और सिडिया नज़र आ रही है।

बिल्डिंग के पास वायर नजर आ रही है पेड़ पौधे कुछ दिखाई दे रहे है इनकी बालकनी नजर आ रही है और यहाँ पास विंडो भी नजर आ रही है बड़ी-बड़ी।

और यहाँ मोटर सायकल नज़र आ रही है और दूकान में बहुत से व्यक्ति आते है और सामान पर्चेस करते है और सामान बहुत सारे दुकाने दिख रही है।